जल से मछली पकड़ कर --

पिलास्टिक के डब्बे मे इसको पैक कर के

जो भी चालू है पुराना ब्रिज भी चालू है।

रिपेयरिंग भी सेंटर में अच्छा होता है।

बहुत ही अच्छा डिज़ाइन भी किया हुआ है घूमे के लिए बहुत ही अच्छा जगह है।

श्री श्याम मंदिर जामताड़ा का प्रवेश द्वार है अंदर में श्याम मंदिर है। और --

ए.टी.एम. यहां पर कई आदमी पैसे निकासी के लिए खड़े है।